एक बहुत लंबा रास्ता दिख रहा है जो की बहुत दूर-दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा है और उसके आजू-बाजू में बहुत सारे सलाखे नजर आ रही हैं।

बड़ा रास्ता दिख रहा है और एक रास्ते पर बहुत सारे लोग जाते हुए नजर आ रहे है और एक रास्ते पर लोग कुछ लोग दिख रहे है।

और हमें यहाँ पर पत्तो से बनी पेड़ भी दिखाई दे रही है और हमें यहां पर बहुत सारी लाइटें नजर आ रहे हैं और हमें यहां पर कांच के रैके दिखाई दे रहे हैं जोकि बहुत खूबसूरत दिख रही हैं।

और यहाँ पर एक कार खड़ी हुई दिख रही है और यहां पर एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है उसका रंग सफेद दिखाई दे रहा है और यहां पर झाड़ दिखाई दे रहे है और बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं| और यहां पर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं ।

स्विमिंग पूल दिख रहा जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ दिख रहा है पानी का कलर नीला है।

यहां पर बहोत सारे फूल लटके हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और यहां पर बहोत सारे स्टेज दिखाई दे रहा है ।

ट्रक दिखाई दे रहा है जो की सफेद कलर का दिखाई दे रहा है और हमें यहां पर दो बड़े-बड़े खंबे दिखाई दे रहे हैं और हमें यहां पर दो और बड़े-बड़े ट्रक दिखाई दे रहे हैं जो की सफेद कलर के नजर आ रहे हैं ।